एक आदमी का अन्दर जूता दिख रहा है।

नीचे का जमीन पूरा कच्चा है।

ये कोई चीज का दुकान है जहां पर बहुत सारी महिलाएं नजर आ रही है एक पुरुष कुछ निकाल रहा है कपड़ा बाहर दुपट्टा रखा हुआ है।

साइड में एक साड़ी है एक आदमी का आधा सर दिख रहा है।

अंदर बहोत सारा लाइट पंखा रेड कलर का दिवाल एक फोटो नजर आ रहा है।

एक काठ का टेबुल है जिसके ऊपर रेड कलर का ग़मछा बिछाया गया है।

बहोत बड़ा लोहा का पुल दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मंदिर के डिजाइन जैसा बना हुआ है।

एक हरा पेड़ भी नजर आ रहा है।

व्हाइट कलर के बल्ब पेड़ में लगाए गए हैं।

बगल में बहुत सारी गंदगी दिख रही है।

बहोत सारे कुर्सियां नजर आ रही है।

इधर साइड में चलने वाला टाइल छोटा छोटा बिठाई गया है।

छत पे बहोत सारे एंटीना नजर आ रहे हैं।

ऊपर पेड़ नजर आ रहे हैं।